यहां पे पेड दिख रहे हैं और बहोत सारी बाइक्स दिख रही है।

सैंक्शन बोर्ड दिख रहा है और यहां पे पाइप दिख रही है फर्श दिख रहा है।

स्ट्रीट लाइट दिख रही है और वायर दिख रही है आसमान दिख रहा है आसमान में बादल दिख रहे हैं।

और यहां पे आसमान भी दिख रहा है आसमान में बदल दिख रहे हैं।

गेट भी दिख रहा है और बहोत सारे स्टेच्यू दिख रहे है।

और सीढ़ियां दिख रही है एक बैनर दिख रहा है जिसमें ये वन जी लिखा है।

और एक न्यूजपेपर दिख रहा है।

छत दिख रही है छत पर लाइट्स लगी हुई हैं।

हवा भरने वाली पाइप दिख रही है।

और इसमें दीवार दिख रही है दीवार के ऊपर लकड़ी का कैबिनेट बना है।

और बहोत सारी बिजली की तारे दिख रही है।

बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

और यह चर्च दिख रही है चर्च में जीसस की पिक्चर लगी हुई है और वॉल में भी बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं।

और यहां हरे रंग के मैट भी दिख रहे हैं लाइट्स दिख रही है।

और शीशे के दरवाजे दिख रहे हैं और बहोत सारी लाइट्स की लड़ियां दिख रही हैं।

खेत में बहोत सारी बंद गोभी लगी हुई है।

यह एक ऑफिस एरिया दिख रहा है।